और यहाँ पे बहुत सारी बाइक भी खड़ी है प्लेटिना उल्टीना हिन्द हीरो होंडा ये ब्लैक कलर का चोर है क्या भाई पकड़ो इसको यार डॉक्टर राधेशयम यादव --

यहाँ पर देखने के लिए तो बोहोत सारा चीजें रखे हुई हैं शंकर जी का डमरू भी रखा हुआ है यहाँ पे बोहोत सारे कीमती समान रखे हुए हैं। ये नकली स्नैक्स भी लग रहे हैं यहाँ पे वाह।

कांदा ले लो गोभी ले लो आलू ले लो लेकिन गोदी तो यहाँ पे है नहीं अरे भाई हट जाओ साइड नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा यहाँ --

डीजल भी मिलेगा पेट्रोल भी मिलेगा। कुछ भी मांगेंगे जो मिलेगा वो यहीं मिलेगा।

नाम है इसका सा सहेनाज हुसैन। एक ग्रीन ब येलो कलर का दिख रहा है उसका नाम है गोल्ड प्लस ।

काफी अच्छा लग रहा है देखने में हमारे दोस्तों को भी हमको भी। ऊपर का आसमान पूरा नीला-नीला है नीचे पानी नीला है बीच में सिर्फ ये --

और इसमें बोहोत सी सुंदर-सुंदर चीजें भी दिख रही हैं। ऊपर ग्रीन कलर का एक टॉवर दिख रहा है। सॉरी वो टॉवर नहीं --

हॉरर स्टोरी भी होती है। उसमें बहुत सारे बुक होते है। ऐसे --